जिसके नीचे टाइल्स लगे हुए है और खंभे दिखाई दे रहे है जिसमें हल्का व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और--